यह दृश्य किसी ऑफिस के अंदर का लग रहा है।

यह चित्र किसी फैक्ट्री या ऑफिस का प्रतीत हो रहा है जीस--

वो सामने खड़ा होकर सबको गाइड कर रहा है।

और हेलमेट पहना हुआ है और लाइट ब्लू कलर का मास्क लगाया हुआ है सभी लोग उसे सुन रहे है।

और इस मंदिर का नाम श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर है।

साथ ही साथ नीचे वाले हिस्से में छोटे छोटे लोवर टंगे हुएं हैं।

यह चित्र नेटवर्क वाले टॉवर का लग रहा है।

बस काफी सुन्दर दिखाई दे रही है एक दम साफ सुथरी बस है।

जमीन पे काले रंग की पन्नी भी रखी हुई है।

यह दृश्य किसी के घर की छत बनते हुए का है।

और पुल के नीचे बहुत से आदमी पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और लोगों ने अलग अलग रंग की टी शर्ट पहनी हुई है सब लोग अपने अपने मित्रों के साथ बैठकर आनंद ले रहे हैं।

और माल पांच मंजिल का दिखाई पड़ रहा है और मॉल में काफी लोग नजर आ रहे हैं।

बीच में और अगलबगल लाइट और फूल पत्ते लगाए गए हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए।

और वह दोनों कुत्ते की जांच कर रहे हैं।

इसमें तीन लोग है दो व्यक्ति और एक कुत्ता।

जो कि कुत्ता बीमार है और दोनों ही डॉक्टर उसके इलाज कर रहे हैं यह दृश्य हॉस्पिटल का लग रहा है।

और बाहर से शीशा लगा है जिसमें से सब दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य मछली मंडी का लग रहा है।

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट के अंदर का लग रहा है।

यह दृश्य किसी मस्जिद या मदरसे का लग रहा है।

इस चित्र में एक लड़की मिरर फोटो खींच रही है जिसमें लड़की के हाथ में फोन है।

यह एक बेकरी का दृश्य है जिसमें पीले रंग से वेलकम लिखा हुआ है।

और बेकरी का शॉप नंबर थ्री यू_जी_एफ रॉयल ग्रैंड कंपलेक्स है।

इस पर सार्थक फाउंडेशन और फ्री चाइल्ड एज्युकेशन का बैनर लगा हुआ है।

यह दृश्य किसी नदी नहर के किनारे का लग रहा है।

और यह ठंडी के मौसम का प्रतीत हो रहा है क्योंकि पीछे धुआं टाइप का कुछ दिख रहा है।

सामने मेज रखी हुई है और साथ ही एक छोटा डस्टबिन भी रखा हुआ है।